और अंदर गैलरी में भी अलग-अलग प्रकार की सजावट कर रखी है और तथा लाइटिंग लगी हुई है नीचे मैट भी बिछाई गई है।

और दूसरा व्यक्ति बाल्टी के अंदर साबुन का पानी लिए हुए साफ करता नजर आ रहा है।

इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ भी अपनी नजर आ रहा है।

ये फोटो किसी मीनार की नजर आ र--

और इसके पास में भी एक कमरा बना इस एक रस्ता जाता है जिसमें दो व्यक्ति जा रहे हैं और एक औरत आ रही है।

यह फोटो किसी दुकान एवं किसी होटल या रेस्टोरेंट की है जिसमें अलग अलग कुर्सियां भी लगी हुई है।

दूध दही कोल्ड ड्रिंक हर प्रकार का सामान मिलता है कलर पेंट भी मिलता है।

चाय के कप भी मिलते हैं और शीशे की टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ है।